सफेद रंग की लाइट नज़र आ रही है लोहे की जाली दिखाई दे रही है।

जमीन का रंग लाल और पीला दिखाई दे रहा है आसपास पेड़ नज़र आ रहे है जिनका रंग हरा --

आ रहा है ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है आसमान का रंग सफ़ेद है नीचे जमींन का रंग भूरा है।

यहाँ पर एक फ्रूट्स की दुकान नज़र आ रही है जहाँ पर बहोत सारे फ्रूट्स दिखाई दे रहै है आसपास पत्तिया नज़र आ रही है पतियों का रंग हरा दिखाई दे रहा है।

यहाँ सभी फ्रूट्स एक काले रंग की स्टैंड पर रखे हुए है स्टैंड लोहै की नज़र आ रही है इसमें --

दिखाई दे रही है जाली का रंग काला नज़र आ रहा है जाली लोहे की दिखाई दे रही है नीचे जमीन है।